और यहां पे कुछ चम्मचे भी रखी हुई है और यहां पे कुछ बैटरी भी रखी हुई है और यहां पे एक बड़ा सा लाइट भी जल रहा है।

और इस पे पिंक ये सफेद कलर की झालर लटक रहे हैं।

यहां पे एक लंबी चौड़ी बहुत बड़ी काली सी चट्टान है।

ऊपर सफेद सफेद आसमान दिख रहा है।

यह एक सब्जी की दुकान है यहां पर बहुत सारी सब्जी रखी हुई है।

ये एक हॉल है यहां पे बहुत सारे सामान बजाने के लिए रखे गए हैं।

इसमें से छह पुतले वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं और एक लेडीज है वो पुतला लाल कलर की साड़ी में है।

एक बैलून लगा हुआ है और कुछ डेकोरेशन के समान भी हैं और यहां इसका गेट शीशा का है।

ने ब्लैक कलर की टाई भी लगाई है और वाइट कलर का शर्ट भी पहन--

पोस्टर में एक बाइक की पिक हैऔर एक कार की पिक है उसके बगल में एक वाइट कलर का घर भी है।

यहां पे एक बहुत बड़ा सा बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के चारों तरफ हरे-हरे घास है।

और इसके नीचे हरे हरे पेड पौधे भी गमले में लगाए हुए हैं।

दुकान के अंदर बहुत सारे कार्टून रखे हुए हैं उसके अंदर बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

और यहां पे जो फ्रिज का रंग है उसमें एक लाल कलर --

यह एक क्लीनिक है इसके बगल में सफेद कलर का पोस्टर है।

और यहां पे एक पंखा भी है और यहां पे एक टेबल भी है और यहां पे जो इंसान है वो हरे कलर की टी-शर्ट भी नजर आ रही उसके हाथ में एक --

और कुछ दूरी पर रोड है और रोड के बगल में एक सफेद कलर का पुल बना हुआ है।

इंजीनियरिंग और उसके बाहर दो सफेद कलर की गाड़ी लगी हुई है जिसके आगे में एक लाल कलर की बाइक भी लगी हुई है।

दूरी पे दो चार पेड़ भी नजर आ रहे हैं और यहां पे धूप भी निकलता हुआ दिख रहा है ।

यहां पे एक ऑरेंज कलर का ग्रिल हैउस ग्रिल गार्डियन ऑफ एंजल्स प्रेस लिखा हुआ है।

और उसका बॉर्डर सफेद कलर का है उसके बगल में एक सफेद कलर की बिल्डिंग है --

और इसके पीछे बहुत सारा पोस्टर लगा हुआ है इस पोस्टर में एक लड़की की तस्वीर भी है।

यहां पे दो दुकानें हैं एक दुकान के आगे ब्लैक कलर के पोस्टर में श्री राम बिल्डर्स मोब --

उसके नीचे हमारी यहां सीमेंट रेता रोडी बर्जरी मिलती है और उसके अंदर बहुत सा --

सीमेंट की बोरियां है और में उसके बगल में एक दुकान है उसमें लिखा हुआ है देश का नंबर वन सिमेन्ट --

और यहां पर बहुत सारे लड़के बच्चे बूढ़े बैठ कर के योगा कर रहे हैंऔर इसके आसपास कुछ छोटे-छोटे पौध और बड़े-बड़े पौधे भी हैं।

आदमी के हाथ में एक सामान भी है और आगे कुछ फूलों के गुच्छे लटक रहे हैं।

और ऊपर जाती हुई ब्लैक कलर की सीडीया भी बनी हुई है।

यहां पर बहुत सारे आदमी और एक आदमी अपने कंधों पर बेग टंगा और उसे हाथ में ब्लू कलर का झोला भी है।

दुकानों में बहुत सारी कार्टून रखे हुए जिसमें बहुत सारा समान है कुछ बोरियां भी रखी हुई है स्टाल पे।

कुछ दूरी पर बहुत सारे सब्जी भी दिख रहे हैं और यहां पे एक महिला है जो ब्लू कलर की साड़ी पहन रही उसके हाथ में एक लाल झोला है।

बहुत बड़े-बड़े पेड़ पौधे हैं जंगल टाइप का कुछ दूरी पर बहुत सारे--

में जाती हुई दिख रही जिसने एक लाल कलर की दुपट्टे लगाई और एक ने हरे कलर की दुपट्टे लगाई --

यहां पे एक बहुत बड़ा सा नदी हैऔर उसके बगल में बहुत छोटे-छोटे पत्थर रखे हुए हैं।

यहां पे एक दो इंसान खड़े हैं जो ब्लू कलर की जींस और ब्लैक कलर --

और यहां पे बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं जो सफेद कलर के जूते पहने हैं कुछ ब्लू कलर की जूते पहने हैं।

ये एक सब्जी की दुकान है यहां पे रंग बिरंगी बहुत तरह की सब्जियां मिल रही ।

यहां पे एक क्रिश्चन मंदिर है सफेद कलर की यहां इसके अंदर एक भगवान की मूर्ति है।

और आसपास बहुत बड़े हैं लंबे-लंबे पैर पौधे और उसके बगल में एक घर है जो सफेद कलर से पेंट किया गया ।

ये एक जगह यहां पे बहुत सारी गाडियाँ लगी हुई है।

सारे गाड़ी ट्रक जो सफेद कलर से पेंट किए हुए हैं और कुछ दूरी पर कुछ दीवाले हैं।

और यहां पे लोहे में एक स्टॉल हैउसमें एक पोस्टर लगा हुआ--

पुतलों को देखते हुए नजर आ रहे हैं और इस जगह के ऊपर लाइट से बहुत अच्छा डेकोरेशन किया गया--

ब्लैक और लाल और पीले कलर की बहुत सारे बेलून हैं।

बिल्डिंगों का रंग सफेद है कुछ बिल्डिंग का रंग पीला--

आगे एक सफेद कलर की गाड़ियां भी लगी हुई है।

और यहां पे बहुत सारी लाइट से डेकोरेशन किया गया है और इसकी दूर बहुत घरना कला अंधेरा है।

और यहां पे ब्लैक कलर का पंखा लगा हुआ है यहां पे ब्लैक कलर का गेट भी लगा हुआ--

एक बहुत बड़ा साधना जंगल है जंगल में दो चार है उस आगे--

यहां पे लोहे की बहुत बड़ी लंबी पुल है जो ब्लू कलर की लोहे की पेंट की गई है।

कलर के बहुत बड़े-बड़े टैंक हैं कुछ दूरी पर सफेद कलर के बहुत--

और यहां की जमीन ऊपर खा हुआ है वहां पे उजला उजला ब्लू ब्लू आसमान--

यह एक मिठाई की दुकान है इसके अंदर एक पोस्टर पे देवी लिखा हुआ है यहां पे एक इंसान है जो काले कलर के शर्ट में है।

काले कलर की जूते पहन रखे हैं और यहाँ पे बहुत सा--